और आसपास खाली मैदान है।

वे और एक सॉफ्ट ड्रिंक का पोस्टर भी लगा हुआ है।

इस चित्र में एक दुकान में कुरकुरे ही कुरकुरे लगे हुए हैं।

एक झूला दिखाई दे रहा है जो पीले कलर का है।

उसके आस पास कुछ गमले लगे हुए है।

है बाहर बगीचा है अंदर एक बंगला है वाइट कलर का है और ऊपर --